और सामने एक दरख़्त है जो पूरा सुख चुका है बिल्डिंग के अंदर--

यहां पे एक बड़ासा घर नजर आ रहा हैं जहां पे हॉस्टल हैं जहां पे साइड अ आजू बाज स रास्ता--

यहां पे काफी सारे किताबें रखी हुई है और लाइटिंगस लगाई हुईं है।

नीचे ब्लू रंग की कारपेट बिछी हुई है जिसमें रेड कलर भी है।

इसके तीन फ्लोर है और ऊपर छत हैं।

यहां पे एक बड़ा सा ग्राँड है।

यहां पे सामने बड़ी सी एक हैं।

इसके सामने कुछ कचरा रखा हुआ है झाड़ है दरकत है।

वो दोनों साड़ी पहना हुआ है।

और ऊपर लिखा है

आसमान पूरा बादल से घिरा हुआ है।